पर एक इमरजेंसी की वो एक आपातकालीन सेवा है जहां पर इमरजेंसी लोग जा सकते हैं जैसे टूटे फूटे इमरजेंसी कुछ हुआ।

जो पिंक कलर के फूल हरे कलर के फूल बहुत ही सुंदर से--

यहां पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एरिया देख --

यहां पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एरिया दिख रहा है जहां पर मुझे बहुत ही बड़े-बड़े होटल वगैरह दिख रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह दिख --

पर बहोत सारे लोग प्रतियोगिता में भाग--

और नाच भी रहे हैं और कुछ लोग यहां पर देख भी रहे हैं।

और बहोत ही बड़ा शहर दिख रहा है यहां पर बहोत ही ज्यादा घर--

कुछ नहीं पता आज रात को जाकर घर में खाना भी नहीं खाएगा।

हुआ है उसके आगे एक गाय भी खड़ी हुई है जो खड़ी हुई है जिसके चार थन दो सिंह चार टांगे और एक पूंछ--

खड़े हुए हैं कुछ लोग बिछड़े हुए है।